और काफी सारे यहां पर पेड़ पौधा लगा हुवा हैं काफी घास भी यहां पर उगी हुई हैं।

यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन हैं।

मैं देख पा रहीं हूॅं यहाॅं बहोत सारा गाड़ी रखा हुआ है। और यहाॅं पर एक पेट्रोल पंप है।

चॉकलेट वगैरा भी यहां पर रखा हुआ है।

और कई भगवान की मूर्तियां हैं यहां पर।

और दो ठो मिकी माउस भी रखे हुए हैं।

काफी गुब्बारे से सजाया गया है इस जगह को बड़ा सा हॉल है।

और काफी सारे कांच लगे हुए है यहां पर।

मैं देख पा रही हूं कि ये बहोत बड़े नदी है बहोत बड़ा तालाब है।

यहां पर कई सारे लोग आ जा रहे हैं काफी भीड़ भाड़ है यहां पर।

और लाइटें भी यहां पर जल रही हैं।

और यहां पर काफी सारी चीजे रखी हुई है बाल काटने के लिए--

और नीचे पत्थर वाला टाइल्स लगा हुआ है।

और काफी सारी गाड़ी यहां पर रखी हुई है।

बच्चे यहाँ पर बॉल खेल रहे हैं। और बहोत बड़ा सा ग्राउंड फ्लोर है। बहोत बड़ा सा मैदान है। यहाँ पर खेलने के लिए --

पंखा भी यहां पर लगा हुआ है नीचे टाइल्स भी यहां पर लगा हुआ है और काफी सारे लोग यहां पर आ जा रहे हैं।